registration of an account for online train booking के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि irctc co in में एक नया account कैसे register करें
हम निम्न के बारे में सीखेंगे
यूज़र की जानकारी प्रविष्ट करना account एक्टिवेट करना और
password बदलना
यूज़र की जानकारी पर कुछ tips
name में 10 से कम characters होने चाहिए
इसमें letters numbers और underscore हो सकते हैं
security क्वेशन उपयोगी है जब हम password भूल जाते हैं
account activation जानकारी email और mobile पर भेजी जाती है
हम देखेंगे कि यह browser में कैसे करें
मैंने यह website पहले ही खोल ली हैirctc co in
अब मैं font बढ़ाऊँगी
पहला कार्य जो हम ticket खरीदने से पहले करेंगे वो है signup
अब मैं इसको दबाती हूँsignup
और हम इस पेज पर जाते हैं
यहाँ यूज़रनेम की ज़रुरत होती है
अब मैं font साइज और बढ़ाती हूँ
kannan mou
यह 10 characters से ज़्यादा स्वीकार नहीं करता है
यह हमेशा बताता है अधिकतम 10 characters
अब मैं उपलब्धता जाँचती हूँ
यह बताता है कि the login name field accepts letters numbers & underscore लेकिन हमने एक फुलस्टॉप लगाया है
अतः जो मैं करुँगी so है
मैं यहाँ जाऊँगी और एक underscore _ mou लगाउंगी और फिर मैं जांचूंगी यदि यह name उपलब्ध है
मुझे एक message मिलता है कि user name is available please go ahead with the registration process
मैं font को और अधिक बढ़ाउंगी जिससे कि यह आसानी से दिख सके
अब हम दूसरी जानकारी प्रविष्ट करते हैं
अब हम security क्वेशन प्रविष्ट करते हैं
अगर आप password भूल जाते हैं तो यह उसको पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोगी है
अब हम चुनते हैं what is your pets name
अब मैं snowy प्रविष्ट करती हूँ
first नेम में kannan
last नेम में moudgalya
gender में male रहने दें
marital status में married
अब date of birth में 20th december 1960
occupation में government
email id में मैं joker @iitb ac in चुनूँगी यह बताता है your password will be sent to this email id
अब मैं mobile number प्रविष्ट करती हूँ8876543210
यह बताता है कि mobile verification code will be sent to this mobile number
nationality में मैं india चुनती choose
residential addressmain 1 main road लिखूंगी
city में agra चुनती choose
state में मैं uttar pradesh चुनती choose
pin/zip में 123456 लिखती हूँ
country में मैं india चुनूँगी
आपको यह अच्छी तरह प्रविष्ट करना है
आप इस address को i tickets प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं
अब मैं phone number में 011 लिखती हूँ
मैंने इसमें लिखा है 12345678
अगर मैं एक अलग office address देना चाहती हूँ
मैं ऐसा no प्रोसेस करके कर सकती हूँ
इस स्थिति में मुझे विवरण भरना पड़ेगा
मैं यह विवरण नहीं भरना चाहती हूँ
मैं yes दबाऊँगी और office address बंद करुँगी
अब नीचे जाते हैं
यह जानना चाहता है कि क्या मैं और emails पाना चाहती हूँ
हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं
अतः मैं कहूँगी no मैं कोई भी emails प्राप्त करना नहीं चाहती हूँ
अब मुझे एक verification code प्रविष्ट करना है – t37861w
अब मैं सबमिट करती हूँ
मैं एक magnifying glass let हूँ यहाँ ज़रुरत है
यह बताता है कि email id: joker
और mobile number 8876543210 सत्यापित किया जायेगा
जारी रखने के लिए ok या अपडेट करने के लिए cancel दबाएं
अब ok पर click करें
फिर यह बताता है please indicate your acceptance of the terms and conditions button at the bottom of the page
अतः नीचे जाते हैं
अब मैं इसे थोड़ा छोटा करती हूँ जिससे आप देखेंगे कि यह कैसा दिखता है
अतः अगर आप चाहते हैं तो आप प्रत्येक पर क्लिक करके देख सकते हैं
इसको स्वीकार करते हैं
मैं accept पर क्लिक करती हूँ
मैंने recording फिर से शुरू की है
मैंने इसे रोका था क्योंकि कभीकभी irctc धीरे चलती है
इसमें थोड़ा समय लगा
फिर मुझे एक message मिलता है thank you you have been successfully registered
मैं इसे थोड़ा बड़ा करती हूँ यह बताता है your userid password and activation link has been send to your registered email id
and mobile verification code has been send to registered mobile number
please use the activation link and mobile verification code to activate your account
मैं slide पर वापस आती हूँ अब account एक्टिवेट करना सीखते हैं
irctc से एक email मिलेगा
email में दिए link पर click करें
या link को browser पर copy paste करें
यह एक web पेज खोलेगा
mobile पर भेजे गए code को प्रविष्ट करें
यह account activates करता है
अब हम यह web browser में करते हैं
ये जैसा कहे वैसा करती हूँ
पहले मैं अपने email address पर जाउंगी
मुझे निम्न mail प्राप्त हुआ है
यहाँ मेरी यूज़र id my गयी है
kannan _ mou password यहाँ दिया है
और फिर मुझे account activate करने के लिए यहाँ click करना है
मैं यहाँ click करती हूँ
यह मुझे website पर वापस लाता है
मुझे यह message मिलता है
अतः मैं so code प्रविष्ट करती हूँ जो मुझे मेरे mobile number पर मिलता है
6 character string
मैं इसे सबमिट करूँगी
यह कहता है security कारणों की वजह से login के बाद मुझे password बदलना चाहिए
अब मैं अपना ticket book करने के लिए तैयार हूँ
पहली चीज़ जो मैं करुँगी वो है sign out
मैं थोड़ा धीरे टाइप करती हूँ यह बताता है सत्र समाप्त हो गया है
यह message आता रहता है खासकर जब आप जानकारी भरने में धीमे हों
कोई फर्क नहीं पड़ता
आप दोबारा login करें और प्रयास करें
मैं अपना account फिर से लॉगिन करती हूँ
अब सीखते हैं कि password कैसे बदलते हैं
अब
activated किये हुए account में लॉगिन करें
इसके लिए email से भेजा गया password उपयोग करें
यूज़र profile और change password link पर जाएँ
पुराना password प्रविष्ट करें
नया password दो बार type करें
अब हम यह web browser में करते हैं
और username मैं type करुँगी kannan _ mou
passwordजो मेरे email address पर भेजा गया था
मैं यह पहली बार कर रही हूँ
kgm838
यहाँ login करें
email पर भेजे गए password को बदला जाना आवश्यक है
मैं यह यूज़र profile पर जाकर करुँगी
change password
पुराना password
मैंने सबमिट कर दिया
मुझे अभी एक message मिलता है
password बदल गया है
ठीक है
मैं वापस slide पर जाती हूँ
आपके account को प्रयोग करने के लिए tips
अपना password किसी को न बताएं
जब आप एक ticket खरीदते हैं तो email पर उसका विवरण प्राप्त होगा
अपने email account का password भी किसी को न बताएं
अपना passwords अक्सर बदलें
अगले tutorial में हम चर्चा करेंगे कि ticket कैसे खरीदते हैं
अब हमारे पास spokentutorial project पर कुछ जानकारी है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
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी